चारो तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग के नीचे दुकान है दुकान शेटर वाले हैं शेटर का कलर व्हाइट है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग ब्राऊन कलर की है बिल्डिंग के आगे करकट भी लगा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग के आगे बहोत सारी लाइटे लगी हुई है।

रूम में लाइट जल रहे है रोशनी दिखाई दे रही है।

नीचे में बहुत सारी गिट्टी भी है।

यहां पर एक बड़ी सी व्हाइट कलर की मशीन भी रखी हुई है।

महिलाएं पूजा कर रहे है नीचे में बहोत सारा फल रखा हुआ है सुप में।

दौरी भी है और ईख भी नजर आ रहे है।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

सामने में एक स्टेज बना हुआ हैं स्टेज के ऊपर कुर्सी रखा हुआ है और दो बड़े बड़े साउंड बॉक्स रखे गए है।

यहां एक जगह बहुत सारा पानी भी है।

मकान के आगे में एक लाइट जल रहा है दुकान में आगे शटर लगा हुआ है जो व्हाइट कलर का है।

दुकान के सामने कारपेट बिछा हुआ है वह ऑरेंज कलर का है।